यहाँ पे बहुत सारे लड़की है डांसिंग करते हुए दिखाई दे रहें हैं और सभी के हाथ ऊपर हैं और सभी रंग-बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं। कोई कुर्ती मे है कोई साड़ी में है और बहुत ही अच्छा है बहुत ही बढ़िया है।